एक टुटा-फुटा घर टाइप का लग रहा है जिसमें लिखा हुआ है धानी मोटर एड्रेस भी लिखा हुआ है नीचे में लिखा हुआ है न्यू धानी मोटर टाटा करके कुछ लिखा हुआ है पुराना पार्लर भी लिखा हुआ है टुटा-फुटा छप्पर टाइप का घर लग रहा है बगल में टाटा मोटर का भी बोर्ड लगा हुआ है।

साइड में पोल बिजली का पोल भी लगा हुआ है और सूखा-सूखा पेड़ भी है उसके बगल में इ बहुत सारे ये पेड़-पौधे दिखने है पीछे घर वर भी दिख रहा है।